पेट्रोल पंप है बहुत मस्त दिख रहा है बहुत सुन्दर दिख रहा है पेड़ भी लगल है बहुत मस्त दिख रहा है चापाकल भी है बहुत सुन्दर दिख रहा है बहुत बढ़िया दिख रहा है ।

चौदह चक्का गाड़ी भी है बहुत बढ़िया दिख रहा है।

बहुत बढ़िया दिख रहा है एक आदमी बाहर हो रहा भीतर हो रहा है बहुत सुन्दर दिख रहा है।

डाक्टर सब जांच-तांच कर रहा है बहुत मस्त दिख रहा है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर दिख रहा है।

आदमी फूल ले के हाथ में रखा है बहुत बढ़िया दिख रहा है बहुत सुन्दर दिख रहा है ।

उसके पीछे भी एगो घर है बहुत मस्त दिख रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा लाइट वाइट लगल है बहुत मस्त दिख रहा है बहुत सुन्दर दिख रहा है।

बहुत मस्त दिख रहा है खिड़की भी है बहुत सुन्दर दिख रहा है बहुत बढ़िया दिख रहा है टेबुल भी है बहुत मस्त लग रहा है ।

इ लग रहा है बस खुलने वाला है इ बहुत मस्त अ बहुत सुन्दर लग रहा बहुत बढियां लग रहा है।

बहु मस्त घर है बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है पेड़ भी लगल है बहुत बढ़िया दिख रहा है बहुत बढ़िया फील्ड भी है ।

बहुत मस्त है बहुत बढ़िया है बहुत सुं --

दो लड़की वाला ले रहे हैं | दोनों लड़की मुस्कान बहुत मस्त लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है |

कंप्यूटर चला रहा है क्या क्या कर रहा है | बहुत मस्त दिख रहा है | बहुत सुन्दर दिख रहा है | बहुत बढ़िया है इधर जैकेट भी बहुत मस्त है और जो भी है --

सिन है बहुत बढ़िया सिन है बहुत मस्त लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत बढ़िया दिख रहा है ।